और यहां पर तीन लोग बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं।

भीड़ बहोत ही ज्यादा है लोग अपने घरों में बालकनी में से झाक कर देख रहे हैं।

नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें से भोलेनाथ की कृपा जिसमें प्राप्त होगी शेषनाग है।

वाह क्या दृश्य है भैंसे पानी में खड़ी है।

ये है बाल दाढ़ी स्पा एंड सलून यहां पर उ दाढ़ी --

एक चबूतरा सा एक कुछ ऑफिस बना हुआ है जिसके नीचे दो तीन बाइक्स खड़ी हैं।

पास ही में डॉक्टर सुबोध कुमार का बोर्ड लगा हुआ है और एक पास में हरि भाई चश्मे वाले का बोर्ड भी --

डेकोरेशन करवानी हो तो ऐसी करवाये शादी के हिसाब से ये डेकोरेशन बहोत अच्छी है।

ये है वैटर्नरी हॉस्पिटल चौबीस घंटे सर्विस देता है बीकानेर में है यहां पर --

व्यवस्था बहोत ही शानदार है लड़के लड़कियां सब कुछ ना कुछ सीख रहे है।

और लड़का भी कुछ सील रहा है।